अं ऊपर देखिए इस जय मम श्री राम लाइब्रेरी अं है और उसके आस-पास में काफी सारे ब्रांच जैसे एल.आई.सी. का ब्रांच है।

और देखिए आस-पास में काफी सारे स्टेज के पास में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

सब शेरवानी पहने हुए हैं और सेल्फी खीचाते हुए दिखाई दे रहें है और बगल में गमला में --